नमस्कार जीचेम्पेंट में फॉर्मेशन ओएफ मॉलिक्यूल्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को जोड़ना और रूपांतर करना वर्तमान अवयव में बदलाव एल्काइल समूह जोड़ना कार्बन चेन को जोड़ना और रुपांतर करना यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 और जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
यहाँ प्रोपेन ब्यूटेन और हेप्टेन के स्ट्रक्चर्स के लिए स्लाइड है
मैंने स्लाइड में प्रदर्शित प्रोपेन और ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स के साथ एक नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोली है
अब ब्यूटेन में टर्मिनल कार्बन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणु से बदलते हैं
इसके लिए मैं पीरिऑडिक टेबल कॉम्बो बटन का उपयोग करुँगी
करन्ट एलिमेंट ड्राप डाउन एरो बटन पर क्लिक करें
इस बटन को पीरिऑडिक टेबल कॉम्बो बटन कहते हैं
सन्निहित मॉडर्न पीरिऑडिक टेबल देखें
टेबल से सीएल पर क्लिक करें
टूल बॉक्स में सीएल देखें
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
इनको क्लोरीन परमाणुओं से बदलने के लिए टर्मिनल परमाणुओं पर क्लिक करें
प्राप्त नया स्ट्रक्चर 12 डाइक्लोरोइथेन है
स्ट्रक्चर के नीचे इसका नाम लिखें
एड ओर मॉडिफाई आ टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें
टेक्स्ट टूल का प्रॉपर्टी पेज खुलता है
स्ट्रक्चर के नीचे डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
आप ग्रीन बॉक्स में बंद टिमटिमाता कर्सर देख सकते हैं
बॉक्स में 12 डाइक्लोरोइथेन टाइप करें
टेक्स्ट टूल प्रॉपर्टी पेज को बंद करने के लिए सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
प्रोपेन स्ट्रक्चर में केंद्रीय कार्बन परमाणु को ऑक्सीजन परमाणु से बदलें
कर्सर को प्रोपेन स्ट्रक्चर के केंद्रीय परमाणु के पास रखें
कैपिटल ओ दबाएं
ओ और ओएस के साथ एक सबमेन्यू खुलता है
ओ सेलेक्ट करें
कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से बदलेंगे
नया प्राप्त स्ट्रक्चर डाई मिथाइल ईथर है
अब स्ट्रक्चर के नीचे इसका नाम लिखें
एड ओर मॉडिफाई आ टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें
स्ट्रक्चर के नीचे डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
बॉक्स में डाई मिथाइल ईथर टाइप करें
अब फाइल सेव करें
टूलबार पर सेव थे करेंट फाइल आईकन पर क्लिक करें
सेव एएस डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल का नाम क्लोरो ईथेन ईथर एंटर करें
सेव बटन पर क्लिक करें
विंडो को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें
यहाँ एक नियत कार्य है ईथेन और पैंटेन के स्ट्रक्चर्स बनायें
ईथेन के एक कार्बन परमाणु को बीआर से बदलें
पैंटेन के टर्मिनल कार्बन परमाणुओं को आई से बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए
अब मैं एल्काइल समूहों के बारे में समझाउंगी
एल्काइल समूह एल्केन का हिस्सा हैं
उदाहरणस्वरूप मिथाइल च3 मिथेन च4 का हिस्सा है
एल्काइल समूह के क्रमागत सदस्य च2 समूह से भिन्न होते हैं
एल्काइल समूह के होमोलॉग्स में निम्न सम्मिलित होते हैं मिथाइल च3 इथाइल c2ह5 प्रोपाइल c3ह7 ब्यूटाइल c4ह9 और इत्यादि
मैंने हेप्टेन स्ट्रक्चर के साथ एक नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोली है
अब मैं दर्शाउंगी कि कार्बन चेन की स्थितियों को कैसे अंकित करें
अंकन चेन की स्थितियों को पहचानने में मदद करता है
एड ओर मॉडिफाई आ टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर पहली चेन की स्थिति के पास क्लिक करें
हरे बॉक्स में 1 एंटर करें
आगे दूसरी चेन की स्थिति के पास क्लिक करें
बॉक्स में 2 एंटर करें
इसी तरह मैं चेन की अन्य स्थितियों को भी अंकित करुँगी जैसे 3 4 5 6 और 7
अब एल्काइल समूह उपयोग करके हेप्टेन की भिन्न भिन्न स्थितियों पर शाखाएं बनायें
अब तीसरी स्थिति पर एक मिथाइल समूह जोड़ें
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
स्थिति पर क्लिक करें
परमाणुओं में बदलाव देखें
अब पाँचवी स्थिति पर एक इथाइल समूह जोड़ें
एड आ चैन टूल पर क्लिक करें
स्थिति पर क्लिक करें
आगे मैं सारी स्थितियों पर परमाणु प्रदर्शित करुँगी
स्थिति पर राइट क्लिक करें
एक सबमेन्यू खुलता है
एटम सेलेक्ट करें और फिर डिस्प्ले सिंबल पर क्लिक करें
इसी तरह मैं अन्य स्थितियों पर परमाणु प्रदर्शित करुँगी
अब देखते हैं कि एक स्थिति पर हम कितनी बार शाखा बना सकते हैं
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
चौथी स्थिति पर क्लिक करें
दोबारा क्लिक करें
कार्बन चेन में शाखा बनना देखें
तीसरी बार क्लिक करके देखें
हम शाखाएं नहीं देख पाते हैं
ध्यान दें कि प्रत्येक स्थिति में शाखा बनाना केवल दो बार ही संभव है
ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कार्बन की टैट्रा वैलेंसी संतुष्ट करता है
फाइल सेव करने के लिए CTRL एस दबाएं
सेव एएस डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल का नाम एल्काइल ग्रुप्स एंटर करें
सेव बटन पर क्लिक करें
अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को जोड़ना और रूपांतर करना वर्तमान अवयव बदलना एल्काइल समूहों जोड़ना कार्बन चेन जोड़ना और रूपांतर करना एक नियत कार्य की तरह ऑक्टेन स्ट्रक्चर बनायें चेन की चौथी और पाँचवीं स्थितियों पर प्रोपाइल और ब्यूटाइल समूह जोड़ें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध वीडियो देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद